ऊपर बोर्ड टंगा हुआ जिसमें लिखा है जन संपर्क कार्यालय।

और एक कारपेट बिछा हुआ है मेरून कलर का डी.जे दिख रह ब्लैक कलर का।

आ एक दुकान दिख रही है जिसमें आ पोस्टर पे लिखा है राजू समोसा कॉर्नर ।

गेट के ऊपर अ एक गुमज बना है जिसमें मूर्ति लगी हुई है।